इसके सामने की ओर दो आदमी खड़े हुए है।

बगल में एक लड़का किसी से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।

और पीछे से दो बच्चे आते हुए उसी स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ दो भवन दिखाई दे रहे हैं।

और वो उसके सामने कुछ लोइयां आटे की रखी हुई हैं।

और कुछ सूखे पत्ते भी नीचे पड़े हैं।

ये फोटो एक बोलिंग वाले की है।

और इसके सामने एक इस गेम का स्टीकर लगा हुआ है।

अकबार रखा गया है और उस अकबार के ऊपर अंगूर रखे हैं।

और इसके पीछे नीले और सफेद कलर के गुब्बारे लगे हुए है।

जिसके सामने की ओर कोहिली ब्रदरस की दुकान दिख रही है।

और इस रोड पे कुछ महिलाएं इस को पार करती हुई दिखाई दे रही हैं।

फोटो किसी मंदिर की दिखाई दे रही है।

और इसमें कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे और एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके सामने के ओर एक अलमारी में ऊपर कंघी और कुछ डिब्बे रखे हुए है।

यह फोटो एक शादी की लग रही है।

यह फोटो एक रिजनल आयुर्वेदिक संस्थान की लग रही है।

जिसमें नीले और पीले कलर के कुछ डिजाइंस बने हुए हैं।

ये इस फोटो में पेड़ बहोत सारे हरे भरे दिखाई दे रहे--

और पीछे की तरफ एक बड़े आकार में यीशु मसीह की मूर्ति लगी हुई है।

और इस स्टेशन पर कुछ लड़के या कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

इसमें से मौलवी साहब बच्चों को तालीम दे रहे हैं।

यहां पे एक बेड दिखाई दे रहा है जिसमें एक तकिया और उसके बगल में एक टेडी बीयर रखा हुआ है।